और ऊपर में लाइट बल्ब भी दिख रहा है।

मुझे यहां बहोत सारे स्पीकर दिखाई दे रहा है।

और बाइक भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां ब्यूटी पार्लर रूम दिखाई दे रहा है।

बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

आदमीन है ग्रीन कलर की टीशर्ट पहने हुए हैं।

दुकान के अंदर इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे बम्बू भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां साइबर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में फैन भी लगाया हुआ है।

मुझे यहां पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

आगे में टू भी लिखा हुआ है।

बहुत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां दुकान दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ भी देख रहा है।

पेट्रोल पंप में बहोत सारा लाइट लगाया हुआ है।

नाव में नफीसा जहांन जहां लिखकर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां दुकान दिखाई दे रहा है।

और लाइट बल्फ भी लगाया गया है।

बाक्स भी देख रहा है।